एक अ मूर्ति भी नजर आ रहा है।

और आस पास में बहुत सारा स्कूटी भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा आदमी लोग नजर आ रहा है।

चार तीन दो लोग कैंडल पकड़े नजर आ रहा है।

दो ठो लड़का भी दिखाई दे रहा है।

आसपास में बहुत सारा गाड़ी लोग नजर आ रहा है।

सामने में बहुत सारा पहाड़ भी नजर आ रहा है।

और ऊपर में ए_सी भी लगा के दिखाई दे रहा है।

पीछे मे बहोत सारा घर लोग भी दिखाई दे रहे है।

इसके अंदर में बहुत सारा टेबल और चेयर दिखाई दे रहा है।

डॉल्स का फेस भी ब्लर है।

और आस पास में बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है।

और एक खिड़की भी देख रहें है।

तस्वीर में एक मुझे रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे है।